यहाँ पर एक ईट जो पीछे बो दिखाई दे रहा है रोलार दिखाई दे रहा है और कुछ जाली वहाँ पर दिखाई दे रही है और आसमान भी साफ दिखाई दे रहा हैं।

वाइट और क्रीम कलर से रंगा हुआ बिल्डिंग है वही पर काफी सारे रंगोली जो है बाहर डाली गई है और कुछ बाइक्स वहाँ नज़र आ रहे है शेड दिखाई दे रहा है ऊपर जो क्रीम कलर का है काफी फैंस वहाँ पर नज़र आ रहे है।

कार्यालय नज़र आ रहा है जहाँ एक स्पेशल केबिन भी दिखाई दे रही है और बाहर जो है टेबल लगा हुआ है बेंच दिख रहा है।

बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो सफेद रंग की नजर आ रही है और उसके विंडोस दिखाई दे रहे है और वहाँ पर काफी सारे पेड़ नजर आ रहे हैं।

हरी घाँस नज़र आ रही है वहीं पर काफी इलेक्ट्रिक पॉल्स दिखाई दे रहे हैं इलेक्ट्रिक वायर्स नज़र आ रहे हैं और एक वेलकम बोर्ड दिख रहा हैं सफेद रंग का है गेट दिखाई दे रहा है और एक रास्ता दिख रहा है।

काफी बड़ा बगीचा नजर आ रहा है जहाँ पर काफी सारे हाम पाम ट्रीस दिखाई दे रहे है और हरे पेड़ नजर आ रहे हैं और कुछ छोटे हरे वृक्ष दिखाई दे रहे है।